डिजाइन से घर बनाया है लाइट भी लगाया है उधर गेट भी है बहुत सारे आदमी यहाँ कुछ कर --

पार्क है बड़ा जैसा पार्क और बच्चों खेलने वाला पार्क है और इधर से चढ़ने वाला सीढ़ी लगाया हुआ है उधर से है।

कृष्ण भगवान का मूर्ति है उस कृष्ण भगवान का हाथ में बांसुरी है पहना हुआ है हाथ में चूड़ी पहना है गले में हार पहना है।